और पेर ये सभी बहोत सारा पीछे दिखाई दे रहे है।

और ऊपर में लाइट और फैन ये सब भी दिखाई दे रहे है।

ऊपर में बहुत सारा लाइट टू लाइट ये सब जल के दिखाई दे रहे हैं।

और साथ में कुछ लकड़ी ये सब दिखाई दे रहे हैं।

और साइड साइड में बहुत सारा बोड ये सब चिपका के रखा हुआ है।

और वो लोग का ऊपर में बहुत सारा फुल टाइप का कुछ सजा के ऊपर में टंगा के रखा है।

ओ लोग का पीछे में बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां घर का अंदर लाइट जलके दिखाई दे रहे हैं।

और लाइट ये सब भी जल के दिखाई दे रहे है।

और बिस्तर का नीचे में डस्टबिन ये सब भी बहोत सारा दिखाई दे रहे और अंदर में--

यह एक क्लासरूम का अंदर बहुत सारा चेयर रखा हुआ है।

और वहां पे बहोत सारा आदमी लोग भी बैठा हुआ है।

और वॉल में एक बॉब भी चिपका के रखा हुआ हैं।

यहां घर का अंदर सफेद कपड़ा पहन के बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

वो लोग के पीछे में ऊपर में कुछ दरवाजा का ऊपर में बेल जैसा लगा के रखा हुआ है।

गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं और सामने में एक आदमी का माथा दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे दो कोर्ट बना के रखा हुआ है।

और इस घर का ऊपर में लाइट ये सब जल के दिखाई दे रहे हैं।

और अंदर में खिड़की ये सब दिखाई दे रहे है।

और ऊपर में भी आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।